इस तस्वीर में आप एक लड़की को देख सकते हैं।

जो की अपना बाल कटाने के लिये नीचे आया है कुर्सी पर बैठा है।

जो की एक्सरसाइज करते नजर आ रहे है अलग अलग तरीके से।